यह एक खेत है जहा पे ढेर सारे अ-अ-अ किसके अ-अ-अ फसल लगी हुई है और दूर दूर तक ढेर सारे बड़े और छोटे पेड़ पौधे दिख रहे है और आसमान दिख रहा है और एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका हाथ दिख रहा है।

और आसमान दिख रहे है दूर में पेड़ भी दिख रहे है जो छोटे और बड़े और घर भी नजर आ रहा है।

यह एक खेत है जो कि बोहत ही हरा-भरा है। ढेर सारी इसमें फसल लगी हुई है और दूर तक अ दुसरो का घर दिख रहा है।

और यहाँ पर दूर-दूर तक बड़े-बड़े न पेड़ लगे हैं और लाइट्स भी लगी है आसमान दिख रहा है।

लोहे का अ कुछ सामान रखा हुआ है आसमान दिख रहे है कुछ वर्कर्स नीचे है और इ हरे कलर का मकान दिखाई दे रहा है चक्की दिख रहे है।

यहाँ पर रेलवे की पटरी या दिखाई दे रही है और यहाँ पे कई सारे पटरियो पर गीटी गीरी हुई दिख रहे है और बगल में घास वाले जमीन भी दिख रहे है गीटी भी दिख रही है।

और बाहर डस्टबिन रखा हुआ है और कुर्सी रखी --